यहां एक स्टेज बना है स्टेज को बहोत अच्छा से सजाया गया है लाल फूल से पीछे हरा है फिर उसमें व्हाइट फूल भी मिक्स है।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है हॉट डील्स का बोर्ड बाटा के भी चप्पल्ले जूते मिल रहे हैं।

देखने से ऐसा लग रहा है ये मॉल है बहुत सारे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।

सर्फ साबून शैम्पू चिप्स ग्लूकॉन डी का डब्बा।

यहां देख देख सकते हैं आप लोग डांस क्लास है यहां पे लड़के लड़कियां डॉन्स सिख रहे है।

एक ब्लू गेट के सामने एक गुलाबी कलर का मकान है।

रोड पे देखिए एक आभूषण का दुकान है ज्वेलरी का दुकान है इसका नाम--